इसके पीछे एक गेट है जो की ग्लास की है और इसके पीछे एक आदमीन है।

और इसके पास पीछे बहुत सारे सामान रखी हुई है।

फोटो एक बिल्डिंग के बाहर की है जो की वाइट रंग की है।

यहां का बिल्डिंग व्हाइट रंग का है और इसके किनारे किनारे ग्रे रंग का पेंट किया हुआ है।

ये फोटो एक मस्जिद के बाहर की है जिसका रंग लाइट ग्रीन क्रीम सफेद रंग का है।

नीचे पे डम्बल रखा हुआ है।

और आगे बर्तन में भी चाट रखा हुआ है।

व्हाइट रंग का टी शर्ट पहना हुआ है उसके ऊपर से हरा रंग का चेक वाशकोट पहना हुआ है और जींस पहना हुआ है।

अंदर बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जहां पे कार पार्क की हुई--

एक टीचर हाथ में पर्स ली हुई है।

उसमें लिखा हुआ है रिया नर्सरी और इस पोस्टर में कुछ फूल और पौधे के फोटो चिपके हुए हैं।

उसके पास में कुछ पेड़ उगे हुआ है।

यहां पे एक लेडी है जो की पीले रंग का कुर्ती पहनी हुई है।

यह फोटो एक पार्क की है जहां पर फुटपाथ बना हुआ है।

इसके साइड साइड में शो प्लांट्स लगे हुए हैं।

ये फोटो एक फैक्ट्री की है जहां पे ऊपर गैजेट का छत है।

नीचे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वो रंग बिरंगा कपड़ा पहने हुए हैं।

इसके पीछे बिल्डिंग है और इसके ऊपर ब्लू रंग का लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारा जरिमाज़ लगा हुआ है।

ब्लू रंग जानीमांस बिछा हुआ है।

यह फोटो एक थाना की है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डोरंडा थाना रांची।

ये चिकन टिक्का लग रहा है और यहां पे कुछ सैलेड भी रखा हुआ--

ये फोटो एक मस्जिद के बाहर का है जो की सफेद रंग का है।

ये फोटो एक दुकान की है जहां पे फूड हब का बैनर लगा हुआ है।

इसके बाहर बगल में एक घर है जिसके बाहर टाइल्स लगा हुआ है और इसका गेट काला रंग का है।